यह तस्वीर में एक व्यक्ति दिख रहा है जो लोहे के शेड के नीचे खड़ा हुआ है वो व्यक्ति टोपी लगाया हुआ है नीचे वो पैंट और टी शर्ट पहना हुआ है उसके हाथ में कुछ लोहे का समान है साइड में कुछ लोहे का समान रखा हुआ है।

जो शर्ट और पैंट पहना हुआ है ऊपर इसके टोपी लगाया हुआ है।

बोर्ड लगा है ऊपर इसमें पीले रंग का एक पेंट किया गया है नीचे इसमें एक पर्दा लगा है बाहर के तरफ इसमें दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यह तस्वीर में एक जंगल दिख रहा है जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है नीचे इसमें एक गाडी खड़ी हुई है जो सफेद रंग की है ऊपर आसमान दिख रहा है नीचे ग्राउंड दिख रहा है।